चार अध्यापक है चार अध्यापक के बगल में कुछ बच्चे रामा रामलीला का नाटक करके कुछ हाथ में लिए हुए हैं एक मैडम और मैडम के साइड में भी कोई लेडिस है परछाई में और सीढ़ी है लाइट है।